जिम में एक लड़का सेल्फी लेते हुए दिख रहा है।

ये एक काफी बड़ा मैदान है जहां पर काफी सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

और मैदान में चारों तरफ काफी बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

मैदान में नीचे कुछ लोहे के ऐंगल भी रखे है।

इस पिक्चर में एक पश्तून नाम का इंडियन रेस्ट्रोरेन्ट दिखाई दे रहा है जो की काफी सूंदर नजर आ रहा है ।

और काफी सारी किताबे जमी हुई दिखाई दे रही हैं छोटा सा एक लोहे का--

पास मे एक फिल्म थीअटर का भी--

बाहर काफी सारी गाड़ियां खड़ी हुई है कुछ फोर व्हीलर और टू व्हीलर --

और कुछ व्यक्ति एरोप्लेन के अंदर बैठ रहे है।

आस पास छोटे छोटे पेड़ पौधे लगे हुए है।

इस पिक्चर मे एक पहाड़ दिखाई दे रहा है और--

कुछ पेड़ बड़े बड़े और कुछ पेड़ छोटे नजर आ रहे है।

दो तीन काफी बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हुई है और--

ये एक रेल्वे स्टेशन जैसा दिखाई दे रहा है जहां पर--

काफी सारे लोग कुर्सियों पर बैठे हुए है।

दूर दूर तक काफी सारा पानी दिख रहा है पानी बिलकुल ठहरा हुआ --

कुछ काफी बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है।

इस पिक्चर में एक रेस्टोरेंट बना हुआ दिखाई दे रहा है जो की--

इसक एक अः बोर्ड लगा हुआ है उसपे ऑइल डेली ब्रेकफास्ट --

एक रस्सी तारो वाली मशीन रखी हुई है आसपास--

इस पिक्चर में एक हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है।

जिसके सामने ग्रीन कलर की जाली लगी हे ।

दीवार पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर--